फोटो शूट करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है।

यहाँ पे लोग एन्जॉय करने आते है खास करके गर्मी के मौसम में लोग बहोत आते है।

टपक सिंचाई से ये लाभ होता है कि ज्यादा पानी यूज नहीं होता और पौधों को एक पर्याप्त मात्रा में पानी पोहोचता हैं।

नीला और सफेद रंग की गुब्बारे से आज इसका उद्घाटन है नीले रंग के कपड़े से कार को ढका हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है।

अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो की क्रिकेट खेल रहे हैं यह खेल का आनंद ले रहे है शाम के समय में --

और यह पहाड़ से होकर गुजर रहा है यह हरियाली दिख रहा है यहाँ पे बोहोत सारे पेड़ -पौधे हैं।

यह हैं अंबिकापुर का नया हॉस्पिटल यह हॉस्पिटल शासकीय हॉस्पिटल है।

जिसको बोहोत सारा सामान लेना हो वह सुपर मार्केट ही आए यहाँ पे देखने के लिए बोहोत कुछ मिलते हैं।